इस चित्र में एक पिक्चर बैठ को है सारे से गेटा है इस्पे थर्टी फाइव रउप्पस एक फ़ोन का है |

इस चित्र में फ्लावर्स का पिल्लर्स दिख रहे है झाड़ा दिख रहे है रोड स्टेप्स पाथ एंड व्हीकल्स विरेलिनेस एंड लाइट्स वो सारे दिख रहे --

इस चित्र में नीला कलर का आसमान बादल है पानी जड़ा आज बज लेके जैसे लेके बड़ा बड़ा छोटे छोटे झरना पानी में जड़का दिक् रही हे --

यह दिख रहा है क्या --